यहाँ बड़ा सा इंडियन आयल पेटोल पंप है।

पाइप भी है उसके आस-पास घर हैं।

स्कूटी है बाइक है।

उसके वहाँ रेलिंग बनी हैं।

और यहाँ नीचे साइड छोटी-छोटी पर्चियां है उस --

ऊपर लाइटे लगी हुई है पंखे हैं।

जो हरे कलर के है अंदर ईंटो --

कुर्सी रखी है सोफे रखे हुए है।

यहाँ स बहोत घर बने है और --

गाड़ी को ठीक कर रहा है नीचे --

रैलिंग के सामने चार औरते खड़ी है।

स्टेज सजा है ये एक रॉयल पैलेस है।

खड़ी है लोग खड़े है।

कुछ लोग वेटिंग कर रहै है।

टॉपी बोर्ड पर लिखा हैं।